पीछे देखो स्कूल की बसें दिखाई दे रही हैं ये सब भी बच्चे स्कूल में हैं।

और पीछे एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

और तीन लड़के खड़े हुए हैं।

सीढ़िया दिखाई दे रही है बाहर एक एक्टिवा है बाइक है साइकल है लिखा हुआ है हसीम हेयर सैलून --

अब लड़के भी तो जाते हैं ना हेयर कट वगैरा कराने तो ये वो हेयर सैलून है जो लड़कों का होता है ठीक है।

और शटर है शटर के अंदर एक लड़की खड़ी दिखाईं दे रही हैं दिन का समय दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में देखो फर्श पर वाइट कलर की टाइल्स लगी हुई है और सामने की तरफ देखो कितने सारे ज्यूसर ग्राइंडर्स दिखाई दे रहे हैं।

और लाइटिंग का बहुत सुंदर बना रखा है इसको बल्ब से डेकोरेट किया हुआ है।

काफी सारी खिड़कियां बनी हुई है पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ठीक है और न दिन का समय दिखाई दे रहा है।

दीवार जो है सफेद रंग की है फर्श पे पत्थर डला है जो कि ब्लैक कलर का है।

और लड़ियां लगी हुई हैं पु उसके पत्तों पर।

इस फोटो में एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है आस पास घास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे--

अब देखो जी इस फोटो में हमें पार्क दिखाई दे रहा है यहां पर दीवार जो है ना पार्क के देखो वो ब्लू और येलो कलर की है आस पास घास है।

अ पेड़ पौधे हैं घर है काफी सारे घर की टंकी भी दिख रही है जो व्हाइट कलर की है यहां पे देखो स्लाइडिंग वाला झूला है।

और देखो एक कार खोल रखी है उसमें कुछ काम चल रहा है आस पास पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं दो लड़के भी दिखाई दे रहे हैं य --